यहां एक पानी टंकी दिखाई दे रहा है।

ये पिक और पैक नाम का दुकान है।

यहां बहोत सारे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं।

ये अम यहां लाइटिंग अ जल रहा है।

हां एक कुत्ता भी दिखाई मिल रहा है।

यहां साइड में पर्दे से अलग चैंबर बनाया गया है।

यहां तीन छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे ट्रक लाइन में लगे हुए हैं।

यहां एक बहोत सुंदर घर दिखाई दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

इधर एक टी_वी लगा हुआ है।

वहां एयरटेल बोर्ड लगाया गया है।

यहां हिरण का झुंड दिखाएं मिल रहा है।

घर के साइड में जंगल दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे टायर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक सोफा भी रखा हुआ है।

ये एक दुकान का दृश्य है।

दूसरे दुकान में एक सोफा रखा हुआ है।

साइड में पूरा पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।